इस मंदिरनुमा पे उसपे कुछ साड़ियां भी रखी हुई दिखाई पड़ रही हैं। सामने घास दिख रही है जो कि ग्रीन कलर में दिख रही है। कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो की ग्रे कलर में दिखाई --

सामने बहोत सारे कार्पेट बिछे हुए है जो की ग्रीन कलर मैं दिखाई पड रहे है। साइड मैं तंबू जैसा बना हुआ है जो की व्हाइट कलर मैं दिख रहा है साइड मैं कुछ परदे लगे हुए है जो की येल्लो कलर रेड कलर मैं दिखाई पड रहे है। सामने बहोत सारी कुर्सियां भी दिखाई पड रही है जो की रेड कलर में दिख रहा है।

यहाँ पे नीचे घास दिखाई पड़ रही है साइड में एक पेड़ दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर कुछ रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुईं दिख रही है ऊपर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है। में बनी हुई यहाँ पर निचे ब्राउन कलर का गेट दिया हुआ है। वहाँ पर एक अदमी खड़ा हुआ है। साइड मै कुछ ग्रे कलर कि दीवाल दिखाई पड़ रही वहां --